ये कमला गर्ल हाई स्कूल डूमरा में है समझ गए डुमरा कोर्ट के पास है सीतामढ़ी --

वो होटल बहुत ही अच्छी होटल --

इसमें श्री लेदर मतलब लेदर की जितने भी प्रकार की समान होते हैं उतनी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं जैसे की बैग बेल्ट चप्पल जूता सैंडल बच्चे के लिए कपड़े जूता सब है।